टाइल्स लगी हुई है तार है।

इलेक्ट्रिक वायर है।

गर्ल्स है एक आदमी स्पीच दे रहा है।

दो रनप की मशीनें हैं।

जिसका का नाम बैंक ऑफ इंडिया है।

यह एक ग्रीन हाउस है।

पर्दे से ढके हुए हैं पूरा।

घास दिखाई दे रहा है।

बहुत पुराना घर है बहुत सारे लोग खड़ा हैं कुछ बैठे हुए हैं।

शैंपू है डब्बा है।

ये लड़का तबला बजा रहा है।

और बहुत सारे दुकानें हैं।

दुकान है सीडी है कुरकुरे है कार्टून है।

टेबल है बिस्किट है लाइट जल रहा है धूप है।

लोहे के चैन भी है।

सूखे हुए एक पेड़ पे पंछी बैठी हुई है।

बहुत अलग-अलग डिजाइन के थैले हैं एल्बम लगा हुआ है।

एक आदमी हाथी पे बैठा हुआ है।

कुछ बच्चे बैठे हुए हैं।

घासे भी हैं।

लाइट भी लगी हुई है।

अमोल्कुल है लस्सी है डिब्बा है।